यहाँ पे बहोत बड़ा स्विमिंग पुल दिख रहा है यहाँ पे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग देखई दे रहा है स्विमिंग पुल का पानी अच्छा दिखाई दे रहा है।

ये एक लिबरोरटी है यहाँ पे हड्डियों का--

ये एक स्कूल है जैसे लग रहा है स्कूल में कुछ समान का --

ये एक और बिल्डिंग बन रहा है जो अधूरा है यहाँ लोग है।

ये एक सन राइज़ पुब्लिक स्कूल या बलरामपुर लिखा हुआ है। ये एक क्लास ग्रुप से एट क्लास तक है इसमें स्वामी विवेकानंद का फोटो लगा हुआ है।

यहाँ पे कुछ बच्चियों का पेन्ट बना हुआ है स्कूल जाते हुए--

नीले कलर का पर्दा लगा है गोल्डन कलर का झालर लगा है ये बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

कुछ- कुछ डिजाइन बना रहे है यहाँ एक टीचर है जो मास्क लगाए हुए इन बच्चों को देख रही है यहाँ पे शटर लगा हुआ है।

यहाँ पे एक चर्च है जैसे लग रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु और दो लोगों का पेंटिंग बना हुआ है।

यहाँ पे प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए है यहाँ पे कुछ लोग है जो कुर्सियों में बैठे हुए है एक मैडम है जो माइक बोल रही है।

ये एक स्कूल है ये बहोत बड़ा स्कूल है इसमें सफेद रंग में पोताई किया गया है और मोठे को लाल रंग से पोताई किया गया है और यहाँ पे बहोत --

ये एक कारखाना है जैसे लग रहा है यहाँ पे लोहे के बहुत बड़े मशीन हियाँ और यहाँ पे सिढ़ी लगा हुआ है यहाँ पे पीले रंग में व्हाइट --

ये एक पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प मे गाडियाँ है पेट्रोल डीजल डलाने के लिए आइ हुई है पेट्रोल डीजल --

और कुछ ड्राई फूड्स भी दिखाई दे रहे हैं।

ये पहाड़ के ऊपर से फोटो खींचा गया है।

ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है भाजपुर का यहाँ पे बाह्य रोगी केंद्र स्वस्थ्य केंद्र राजपुर लिखा हुआ है यहाँ पे रोगिओ का इलाज किया जाता है यहाँ पे मैदान ही मैदान है यहाँ --